ग्रिल सी बनी हुई है एक ऑटो बाला ऑटो लेके जा रहा है काफी पेर पौधे भी लागे हुए यहाँपे कई सारी गाड़िया पार्क हुए है । यहाँपे लोग जा रहे है कुछ आ रहे--

कई सारे लोग हैं यहां पर और एक बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं दूल्हा दुल्हन भी खड़े हुए यहां पर लड़का लड़की है स्टेज पर स्टेज काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे--

एक हुई है वहां पे सारे चीजे मिलती है यहां पे समान भी भेजता है यहां पर और बच्चे खड़े हुई परी बनी हुई झण्डा लिए हुए हैं बच्चे। बच्चे बाड़े खुश--

के-ए दो काफी रखे हुए हैं दो कुछ पट उम कटोरि में कुछ रखा हुआ खाने के लिए। और दो कुछ और मसाले टाइप का रखा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है। उहापे लिखा हूआ हे बेस्ट कफि मे--

वन रहि हे। और यहां पर उन्होंने कुछ खोल रखा है। यहां पे चेक कर रहे हैं उसको पाइप डालके और एक बोर्ड से आइ है-ए एक चेकार ।